बाहर की तरफ बहुत सारे फूले गमले में लगाए हुए हैं।

यहां सामने एक रोलेक्स का शॉप भी दिखाई दे रहा है ।

यहां बहुत सारे बल्व भी लगाए हुए हैं।

ये एक नदी का दृश्य है जहां पर एक सामने आदमी बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।

तथा इसके चारों तरफ बहोत सारे घास लगाए गए हैं।

ये एक प्रोग्राम के गेट का दृश्य है।

सामने की तरफ दो बसें भी दिखाई दे रही हैं जो पीला और ग्रीन कलर पर है।

ये एक जंगल का दृश्य है।

ये एक पहाड़ का दृश्य है जहां पर दो गुफे दिखाई दे रहे है।

इसका छत करकट के मदद से बनाया गया है।

एक काला पत्थल में कुछ लिखा हुआ है।